और दो ताला पर से एक व्यक्ति झाग रहा और एक व्यक्ति उतर रहा है।

बगल में एक छोटा छोटा दिवाल में भी है कुछ साटा गया है।

ये बगल मे एक बड़ा सा तालाब है उसमे बहुत अधिक पानी है।

रेड कलर का भी दरवाजा है।

उसके पास एक बिजली भी पार हुआ है उसके चारो ओर से पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं उसके बगल में एक--

उस पर काफी सारे घर भी हैं।

यहां पे घर बन रहा है।

उसके चारों ओर से पेड़ पौधे भी लगे हुए है।

जिसके नीचे पिलर दिए हुए हैं।

यहां पे एक व्हाइट कलर का टाइल्स रखा हुआ है।

जिसमें एक छोटा से टाइल्स से सपोर्ट भी दिया हुआ है।

टाइल्स के बगल में एक लकड़ी का पलाई भी रखा हुआ है।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

और यहां पर गोंद भी रखा हुआ है।

और इसके चारो ओर से लोहा से घिरा हुआ है।

और एक डैशबोर्ड पर रिपब्लिक लिखा हुआ है।